बहुत सारे टुकरिया वगैरह है जिसमें सब्जी रखे हुए हैं यहाँ एक करके मिर्च है।

और लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं पीछे अ फ्लैट वगैरा दिख रहे हैं।

अ कुछ रेड कलर के हैं कुछ ब्लैक एंड सिल्वर में है कुछ ग्रीन कलर के हैं।

रूम टाइप का दिख रहा है जैसे मैक लिखा हुआ है कुछ पेट्रोल पंप दिख रहे हैं कुछ--

और बालू है एक आदमी ने ब्लैक कलर का शर्ट है वाइट वाइट पैंट पहने हुए हैं।